इसने क्या हैं बहुत बढ़िया कपड़े पहन रखी हैं यहाँ पर बहुत सारी कुर्ती पड़ी हुई हैं।

रेलवे से लोग अपनी कॉफी पी कर इस ही कप में अपनी चाय पीते हैं और इस कप में ही अपना कार्य करते हैं और उस कॉफ़ी को बहुत ही ज्यादा --

बोहोत सारे कारे भी हो रहा है और बोहोत साड़ी हरी भरी जिया भरी पेड़ पोधे भी दिखाई दे रहे है।

यह घर का काम पूरा चल रहा हैं चालू दुबारा से यहाँ पर बहुत सारे--

पिलर भी लगे हुए हैं ये घर दुबारा रेनोवेट या फिर नया बन रहा हैं।

यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं ब्लैक कलर की वाइट कलर की--

वह जैसे कि मर्सिडीस भी खड़ी हुई हैं यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं।

जहा पर ये ऑटो वाला अपना ऑटो ठीक कर रहा है और यहाँ पर तेवियस भी रखी हुई है।

इस टेप बुक ओरेंग ग्रीन और बहोत ही ब्लू भी दिखाई दे रहा है और येल्लो भी दिखाई दे रहा है।

इसके हाथ में एक फेलविट दिखाई दे रहा हैं जो की रेड कलर का हैं--

यह किसी पार्क के अन्दर की बहुत ही सुन्दर और बहुत ही बढ़िया फोटो दिखाई दे रही है ।

बिल्डिंग के अन्दर की बहुत ही बहुत ही जादा बढ़िया फोटो दिखाई दे रही है ।

जहाँ पर इस बिल्डिंग का कार्य चल रहा हैं जिसपे बहुत ही ज्यादा--

प्लास्टर का कार्य हो चूका हैं ला इसलिए अभी तक पेंट हुआ हैं।

का डिस्टंबर हो रखा है और यहां पर ग्रीन कलर क परदे भी टंगे हुए है जो की बहुत बढ़िया --

ये है पोस बहुत ही सुन्दर बोहोत ही बढ़िया आकर्षित फोटो दिखाई दे रहा है ।

यहाँ पर दुर्गा माँ की आरती हो रही हैं पूजा हो रही हैं।

ये हैं किसी इस लरी के बाहर की बहुत ही सुंदर--

इसकी टाइल्स का रंग यहाँ पे ब्लू भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे कुछ एंगल्स यह पड़े हुए है जोकि--

यहाँ पर ये हैं दो टरी खड़ी हैं और बीच में एक आदमी भी खड़ा हुआ हैं।

वह बहुत ही जादा सुन्दर फोटो दिखाई दे रही है यहा पर ये है दा किचन में आपसे --

यह किसी गार्डन की अंदर के गुलाब की फोटो की बहोत ही सुंदरता बहोत ही बढ़िया फोटो भी दिखाई दे रही है।

यहां पर चार पांच बहोत सारे गुलाब भी दिखाई दे रहे है जोकि रेड कलर के भी दिखाई दे रहे हैं।

और जो हैं इनके बीच हरी हरी पत्तियाँ भी दिखाई दे रही हैं।

यहा पर ये है बोहोत बड़ा पेट्रोल पंप भी दिखाई दे रहा है जिसके टेंकर भी लगे हुए है ।

यहा पर बहुत बड़ा पेड़ पेड़ दिखाई दे रहे है और बोहोत सारा कार्य भी हो रहा है ।

यह किसी स्कूल के बहार का बहुत ही सुन्दर और बोहोत ही बढ़िया फोटो दिखाई दे रहा है ।

इसके बीच में गीली जमीन भी दिखाई दे रही हैं जोकी बहुत ही बे--

यह एक नदी केअंदर में बहुत बड़ी नाव की फोटो दिखाई दे रही है जहा पर बहुत सारे लोग एक नाव पर चढ़े हुए है।

क्युकी बहुत बड़ी भी नाव दिखाई दे रही है लगता हैं यह गंगा जी है और इस नाव को चलाने के लिए--

बोहत से लोग बेहरत भी कर रहे है और इस माह को कलर क आसमानी भी दिखाई दे रहा है ।